जा रहे है एक युवक व्हाइट शर्ट पहने हुए है।

एक शटल लगा हुआ है। एक बोर्ड है। देवाल है।

और पत्ते का डिज़ाइन कुछ गोल कलर का आकार में है। नीचे से उसमें एक लम्बा कलर का टिक्का लगा हुआ है जो कि बहुत दूर में फैला हुआ है।

शर्ट और ये गोल्डन पैंट पेहेन के खड़ा हो या नीचे फर्श पर खड़ा हुआ है। कुछ पीछे भी दिख रहे हैं।

यह कुछ तस्वीरें है जो की एक आदमी को दर्शाता है । आदमी ब्लू कलर का शर्ट पेहना हुआ है जोकी सेल्फी ले रहा है । उसके पीछे जंगल है झाड़ है |